ये बोहो-ये पत्थरो से टूटी हुई इमारत लग रही है। पत्-पुराने पत्थरो से बना हुआ ये इमारत नीले आसमान पर पतझड़ का मौसम पेड़ सूखे हुए हैं।

एक घर के सामने के बगीचे का दृश्य दिखाई दे रहा है सामने बोहोत सारे घर बने हुए है ।

चित्र अनुमण्डल कार्यालय सदा छपड़ा सारण की है इस चित्र मे बड़ी सी गारी खड़ी है ।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

बोहोत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है सफेद आसमान पर दूर छोटे-छोटे घर इमारते दिखाई दे रही है

एक बगीचे का दृश्य है जहा सुनसान सा बगीचा है दो बच्चे छोटे-छोटे भी दिखाई दे रहे है बोहोत सारे झूले लगे हुवे है।

ये गाड़ियों मे कई गाड़ी चार पईयों वाली भी है दो पईयों वाली गड़िया भी खड़ी हुई है ऊपर खुला एक आसमान है ।

इस बगीचे मे बोहोत सारे लोग घूमते-फिरते हुए दिखाई दे रहे है ।

इस पेड़ के पीछे घर बना हुआ है आस-पास छोटे घर छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है पानी जाने के रास्ता भी बना हुआ है।

इस चित्र मे दो पईयों की वाहन दिखाई दे रही है इस चित्र मे सात दो पहियों की वाहन हैं।

यहा चारों और हरियाली ही हरियाली है बड़े-बड़े हरे-भरे पेड़ खड़े हवे है ।

इस पेड़ की और द एक बड़े सा बगीचा भी दिखाई दे रहा है जहा फूल स जैसा बने हुवा कुछ इमारत सा लग रहा है ।

सामने बोहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है कई बच्चे बीच लेन मे चल रहे है और कई बच्चे बगीचे मे खेल रहे है। ।

ये बहुत ही सुंदर चित्र है इस चित्र पर तीन द्वार बना हुआ है द्वार के ऊपर लाइट से ये बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है।

चित्र मे दिखाया गया है कि ये रेलवे स्टेशन के चित्र लग रहा है इस चित्र पर सीड़ियां बनी हुई है।

इस दुकान में काफी सारा चिप्प कुरकुर आधी सामन रखा हूआ है।

जिसकी दोनों तरफ दो शेर मोजूद है इस दरवाजे के ऊपर लिखा है श्री ठाकुर प्रसाद सिंह के सपुत्रों द्वारा निमित ।